हरी मैट बिछी है लकड़ी दिखाई दे रही है।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

जिसका नाम सिटी कार्ट है के_ एफ_ सी_ का बोर्ड लगा है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक टेम्पो खड़ा है।

इस चित्र में कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं।

कुछ टाइल्स दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ बच्चे दिखाइ दे रहे है।

कुछ डलिया नजर आ रही है।

इस चित्र में तालाब दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमी नज़र आ रहे हैं।

एक डस्बिन दिखाई दे रहा है।

टाइटन और सोना लिखा हुआ है।

एक कार दिख रही है जिस पर कपड़ा डला है।

इस चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है। एक घर जैसा बना है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं काफी सारे।

इस चित्र में एक दिख रहा है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दो लड़के दिखाई दे रहे हैं।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

हरा टब नजर आ रहा है अल्फा लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक स्विमिंग पूल दिख रहा है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।